कुछ गमले हैं जो की रेड कलर के हैं।

हैं येलो कलर के भी हैं ब्लू कलर के भी हैं इनमें कुछ छोटे-छोटे पैंड़ लगे हैं।

एक पुराना मंदिर है जो की बहुत ही ज्यादा पुराना मंदिर है।

यहां पे एक प्लेट बैनर लगा हुआ है।

एक डैम ज बाड़ा बड़ी सी नदी है और यहां पे--

यहां पे एक ग्रीन कलर का गोल चक्का है जिसमें ग्रीन घास है।

ब्लैक कलर की फर्श है। ब्लैक कलर की टायर है।

यहां पे एक फुव्वारे वाली बोतल हैं पानी वाली हैं ब्लू कलर की।

सिल्वर कलर का एक ड्रम है जिसमें चाय उबलती है।

घूम रहे हैं यहां पे सुखे सुखे पेड़ है।